ये एक योगा क्लास है और योगा क्लास में अलग अलग तरह के आसन--

ये जो है पानी का देखा हुआ है जिसमें एक लेडिस और एक जेंट्स --